ये एक टायर का दुकान है वहां पे बहुत सारा टायर रखा हुआ है।

और पोस्टर चिपकाया हुआ है।

दीवार में पेंट किया हुआ है व्हाइट कलर से।

एक बहुत बड़ा घर है।

वहां पे एक रास्ता गया हुआ है।

और व्हाइट कलर से पेंट किया हुआ है।

एक बड़ा सा रूम है उसमें दो बेड लगाया हुआ है।

कुछ रंग से रंगा हुआ है।

मिर्चा है जो हरा कलर का है।

एक रोड हैं।

दो आदमी हैं दो बच्चे हैं एक लेडी है।

एक बिल्डिंग बन रहा है।

एक मकान है पीले रंग से रंगा हुआ है एक आदमी है।

एक बहुत बड़ा सा तलाब है तलाब के बगल मे एक रास्ता गया है।

एक बहुत बड़ा सा रेलवे क्रॉसिंग है।

बिल्डिंग एक बिल्डिंग व्हाइट कलर से रंगा हुआ है।

एक बहुत बड़ा सा पूल गया हुआ है और बहुत झा बहुत सारा झाड़ी हैं एक गाड़ी भी लगा हुआ है।

लाइन का खम्बा ह--

इसमे तार ताना हुआ है।

एक मॉल है उसमें बहुत सारे खाने पीने का सामान रखा हुआ है।

हरा कलर से पेंट किया हुआ है।

दीवार में कुछ चित्र बनाया हुआ है पेड़ का और एक लड़का एक लेडिस का है।

चार पर्दे हैं एक खिड़की है एक दरवाजा है।

अह बहुत सारा सामान भी रखा हुआ है।

ईटां जैसे कुछ सामान रखा हुआ है और एक डराम है।

तीन पेड़ है। एक बगल में बड़ा सा बिल्डिंग है।

और दुकान है तीन लाइट लगा हुआ है।